यहां आप देख सकते हैं ये गेस्ट हाउस है और ये गेस्ट हाउस आप देख सकते हैं लुकिंग सो प्रिटी --

और गेट इसका खुला है ठीक है और इसके बाहर दो स्कूटी एक बाइक खड़ी है आप खुद देख सकते हैं सामने से हमें सब नजर आ रहा है बहोत अच्छे --

यहां आप देख सकते हैं आगे काफी सारा स्पेस है उसके बाद जाके शॉप है शॉप का शटर आन है।

और इसमें बहोत सारी ऐसी चीजे हैं बहुत प्यारी प्यारी चीजे मिलती हैं और यहां भी आप देख सकते हैं शहनाज का किट भी हमें दिखाई जा रहा है जो कि हमें बहुत ही अच्छी तरह दिख रहा है।

प्यारा सा मतलब घास वास और यह पेड़ पौधे कितने प्यारे और एक जेंट्स बैठे है चेयर पे जो की बेंच पे कुछ सामान परचेस कर रहा है।

जो की आप देख सकते है आस पास का उसका और उसके आगे हमें कुछ वायर कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और ये बहोत ही अच्छा लग रहा है।

और आसपास आप देख सकते हैं पब्लिक देखिए उस साइड देख रही है पहाड़ी इलाका है और उसके पास हमें एक फोर व्हीलर भी नजर आ रही है।

काफी सारे सोफे सोफे पर देखिए ब्लू कलर का कवर चढ़ा रखा है जिससे इसका लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है।

वो बहोत प्यारी लग रही है आसमानी कलर की है और यहां दो बच्चे हैं जो साइड देख रहे बाकी पब्लिक है जो इंजॉय कर रही है इस चीज को देख --

यहां आप देख सकते हैं एक शॉप है और शॉप में आप देख सकते हैं कैसे तीन चेयर लगा रखी है।

यहां आप देखिए ये जो हमें टेरिस दिखाई दे रहा है कितना प्यारा लग रहा है इसके ऊपर आकाश देखिए कितना प्यारा नजर आ रहा है।

यहां आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक है यार इस झील का।

और इसके पास एक झंडा लगा रखा है देख लीजिए और कुछ यहां पे कुछ जेंट्स खड़े हैं कुछ लेडिस भी हैं।

यहां हम देख सकते हैं ये एक बस स्टॉप नजर आ रहा है और यहां पे आप देख सकते हैं दो बसे खड़ी हैं।

यहां हम देख सकते हैं ये एक बहोत ही अच्छी जगह खुली जगह है जहां के बड़े-बड़े पेड़ हैं और बहोत ही अच्छा लुक दे रहे हैं और यहां पे टीन-शेड किया हुआ है।

यहां देख सकते हैं ये एक शॉप है शॉप का आप देख सकते हैं फ्रंट कितना प्यारा है और इस शॉप का नाम है आओ बच्चों --

यहां आप देख सकते हैं ये एक शॉप है जिसका नाम है विजय पुस्तक भंडार और एक यहां देख सकते हैं एक आदमी खड़ा है जो कि बुक्स परचेज कर रहा है और इस --

यहां आप देख सकते हैं यहां पे राधे राधे गेस्ट हाउस भी है और यहां आप देख सकते हैं --

मैन रोड पे जो कि दो फोर व्हीलर हमें नजर आ रही है एक ऑफिस भी है और काफी अच्छी फैसिलिटी है।

और ऊपर जो डेकोरेशन हुआ हुआ है वो देखिए कितना प्यारा है और आसपास जो ये टाइले है कितनी प्रीटी लग रही है और हमें दो जेंट्स भी दिखाई --

यह बंधन बैंक के ए_टी_एम में ओ_के और इसके बाद देख लिए एक छतरी लग रही है उसके बाद बाइक भी खड़ी है।

जो की ई रिक्शे के सामने खड़े है और एक दूसरे से हाथ मिला रहे है आप खुद देख सकते है और पीछे देख लीजिए हमें स्कूटी भी नजर आ रही है।

यह देखिए आप ये किराने की शॉप पे शॉप पे आप देख सकते हैं काफी तरह के वैरायटी है।